यहां में एक डी_जे का पिक्चर दिखाई है जिसमें कि डी_जे --

यहाँ हमें हमें एक पिक्चर दि गई है जिसमें रॉयल एनफील्ड की बाइक है पीछे लगी हुई है चार बाइक है टोटल एक लड़का खड़ा है आगे और एक चेयड़ रखी हुई है यहाँ पे तो एदम --

इस पिक्चर में हमें मोबाइले खींची ट्विट --

यहां में हमें एक पिक्चर दि गई है एयरटेल फोर जी वोडाफोन यहां बहुत अच्छी शॉप है।